बिल्डिंग की एक बालकनी भी दिखाई दे रही है।

नीचे काफी सारी छोटी छोटी बिल्डिंगे में भी दिखाई दे रही हैं।

स्विमिंग पूल के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है।

उसमें चार पांच कारें और बाइक भी खड़ी हुई है।

इसमें तीन चार बाइके के भी खड़ी हुई है एक --

एक लाल कलर का ई रिक्शा दिखाई दे रहा है और --

एक एक्टिवा भी खड़ा हुआ है।

पीछे एक पुरानी सी गंदी सी दीवार--

फेडरल बैंक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

किताबें और बहोत सारे बक्से भी दिखाई दे रहे।

पेट्रोल पंप पे हवा भरने वाली मशीन भी लगी हुई दिखाई दे रही--

बनी हुई दिखाई दे रही है नदी के ऊपर --